यहाँ पे एक बहोत बड़ा बिलडिंग दिखाई दे रहा है जोकि चारो तरफ है उनके किनारे में एक गेट है जोकि खुला हुआ है।

यहाँ पे एक बहुत बड़ी नदी है जो कि बहुत ही ऊपर में फैली हुई है और उसके --

यहाँ पे बहोत बड़ा गार्डन दिखाई दे रहा है जोकि बहोत ही लम्बा चौड़ा है और कुछ डेकोरेट किए गए है और हरा-भरा सब पेड़ में दिखाई दे रहे है उसके बगल में कुछ घर भी है जोकि दो मंजिल का बना दिखाई दे रहा है और एक इंसान चलते हुए दिख रहा है। .

और उसके किनारे में एक मंदिर है जिसके किनारे में एक झंडा भी गड़ा हुआ है रेलिंग सब ऊपर में छत में लगे दिखाई दे रहे है आसमान सब अच्छे से दिख रहे है तार सब दिख--

यहाँ पे तीन इंसान एक दूसरे के हाथ को पकड़े हुए कुछ प्रॉमिस कर रहे है जैसे प्रतीत हो रहे है और आगे की साइड देख रहे है नीचे में एक कुर्सी लगी हुई है।

यहाँ पर दो व्यक्ति ऊपर छत को साफ कर रहे है किसी चीज से ऐसे प्रतीत हो रहा है और बीच में बाल्टी को रखे हुए है जिनका रंग लाल है और उसके किनारे में कुछ --